और उसपे बहुत सारा बड़ा बड़ा मछली रखा गया है और यहां पे आदमीन भी हैं।

रूम में बहुत सारा लाइट लगाया गया है और बहुत सारा पंखा भी लगाया गया है।

और यहा पे थाले भी रखा गया है और लौटा भी रखा--

और बगल में बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा--

और यहा पे बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा बिल्डिंग सफेद कलर का है।

रूम में काउंटर भी बनाया गया और काउंटर सफेद कलर का है।